एक रिक्शा खड़ा दो आदमी खड़े एक महिला खड़ी।

कॉलेज दिख रहा है फूल खिल रहे हैं।

पेड़ हैं हरे पत्ते दिख रहे हैं हरी घास दिख रही है।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

दीवारे दिख रही हैं पंखे दिख रहे हैं।